इस फोटो में एक व्यक्ति है जो पानी के पत्थर पे बैठा दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहे हैं और बहुत सी प्रकार की पाइप है जो कि अलग अलग लगा करती और डिजाइन में दिखाई दे रही है।

इस फोटो में किसी मंदिर का फोटो है। देखने पर इस--

दरवाजे खिड़कियां जो काले कलर की एवंम दरवाजों के ऊपर शीशे भी काले कलर के है बाहर अलग अलग प्रकार के पौधे वगैरा पेड़ भी --

छोटे बड़े रसोई में आने वाले सामग्री वगैरह दिखाई दे रही है जो कि काफी खूब और सारी है।

जो सामग्री ली जाए जाती है को अलग-अलग प्रोडक्ट वगैरह है।

वगैरह काफी अलग पेन और आदि इस प्रकार की सामग्री है।

बाइक और साइकिल के टायर वगैरह दिखाई दे रहे हैं।

कुछ व्यक्ति और बच्चे बूढ़े भी हैं जो कि अह लेने के लिए सामान लेने के लिए बाहर कस्टमर के रूप में के तौर पर खड़े हैं।

इस फोटो में काफी सारे कूलर दिखाई दे रहे हैं और कुछ पंखे भी दिखाई दे रहे हैं जो कि पन्नी में --

लाल कलर का दिखाई दे रहा है कुछ में लोग वगैरह है जो कि आते जाते दिखाई दे रहे टेंपू वगैरह दिख रहे आसपास की बिल्डिंग भी काफी दिखाई दे रही --

इस फोटो मे कुछ जी_जी_एस का प्लस लोगो दिखाई दे रहा है जहां पर काफी सारे नीचे भी भीड़ है लोग सारे इकट्ठे हुए है।

काम कर रहे हैं ल लकड़ी की सहायता से बनी गई मशीन है इसमें कुछ प्रकार का काम करते दिखाई दे रहे हैं कोई धागे --

फोटो काफी पास से लिया गया है पीछे भी एक आसमानी कलर की टी शर्ट में एक लड़का दिखाई दे रहा है ऊपर लाइटिंग और फैन भी है।